यहाँ पर कुर्सी लगी हुईं हैं। टेबल लगी हुई हैं जो दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बस खड़ी हुईं हैं। छोटी वाली जो दिखाई दे रहीं हैं। कार खड़ी हुई है जो दिखाई दे रही है। दो --

दो व्यक्ति बैठे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं। तीन व्यक्ति बैठे हैं जो दिख रहे हैं। यहाँ पर गमले रखे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गुब्बारे लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं। कुछ खम्बे गड़े हैं जो दिख रहे हैं। कुछ बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कुछ तार खींचे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति दिख रहे हैं।

यहाँ पर एक टीन शेड बना हुआ है जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रेल की पटली दिखाई दे रहीं हैं।

यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है। वह दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक कार खड़ी है। वह दिखाई दे रही है। कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वह दिख रही हैं। यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है वह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गमला रखा हुआ है वह दिख रहा है।

यहाँ पर कुछ डिब्बे रखे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं। य यहाँ पर एक ट्रक दिखाई दे रहा है जिस पर पाइप बंधे हुए हैं। वह दिख रहा है।